एक ठो आदमी यहाँ खरा है सादा कलर कपड़ा पेहन के।

ये बादल है उजरा और गेट है ग्रील है सीढ़ी चढ़ने आथी है धरती हय बादल लगा हुआ है।

किसान भगवान है दीवाल है बढ़ियां एगदम बाशली बजा रहा है किशन कन्हैया है|

ओ गेट में काला रंग का है भीतर में भी आथी रंग का है कलर है घीआई रंग के|

बहुत बढ़ाया गौड़ पोछा है गौड़ पोछने वाला बहुत सुन्दर-सुन्दर है।

थोड़ा काला-काला फोटो है नारियल के गाछ है पानी भी है सूरज भगवान उग रहा है एकदम।

गाछ भी है अथि पर बढ़िया-बढ़िया गाछ है छत पर अभी है अथि समान रखल है। गा--

एकदम से लाल पीला ब्लू सा- सामुन है सरफ है ।

दीवाल अथि गाछ है आसमानी रंग के अथि ब्लू है अ गाछ ढेरी है।

किराना के दुकान है हाय आगे मे पेमेंट के रखा हुआ है ढेर सा चीज है सबकुछ के दुकान है एकदम ।

किराना में ये खिड़की है गेट है बहुत बढ़ियां लगा हुआ है |

बहुत बढ़ियां गाछ है ढेरी गाछी है।

ब्रिनच है ब्रिनच है ढेर सारा लाव है पानी दिखा रहा है ।

आसमान भी लौक रहा है उजरा-उजरा ढेर सा अथि है पानी ।